कार्पेट है रेड कलर का। डिज़ाइन् हो रहे हैं उसमे जयपुरी।

यह रूम के अंदर एक अलमारी है जिसके अंदर कुछ कपड़े लगे हुए हैं कपड़ों के सेट से बना कर रखे हुए हैं।

नदी भरी है जिसका विस्तार बहुत ज्यादा है।

पानी का रंग बहुत काला है घासो में जो फूल है वो बैंगनी-नारंगी रंग के है।

दीवार का कलर ग्रीन है विंडो का ब्राउन उसके पास बहुत-सी मशीन्स रखी हुई हैं जिनसे वो पेशेंट को ट्रीट कर रहे है।

ऊपर से एक ब्रिज जा रहा है नदी के ऊपर से कुछ लोग जो है वो व्हा पे खड़े हैं।

इंडियन पोस्ट ऑफिस हैं उसके दोंनो दरवाजे खुले हुए हैं बाहर एक लड़का टी-शर्ट लोअर में झाड़ू लगा रहा है रूम के बाहर चप्पल लगी हुई है।